गुलाबी रंग की है। सफ़ेद रंग पट्टी का दिख रहा है और कुछ कपड़े इस पर सूख रहे हैं।

यह तस्वीर बहुत सारे बच्चियों के व्यायाम करने के जैसे दिख रही है।

नीचे का पैंट व्हाइट कलर का है। सफेद ज़मीन पर बैठ कर योगा का जैसा कर रहे हैं।

तस्वीर में नदी के ऊपर एक पुल की है जिस के ऊपर बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह सफ़ेद कलर की बिल्डिंग के पास खड़ी है। बिल्डिंग में बोहोत सारे बड़े दरवाजे गैलरी और खिड़कियाँ देखी जा सकती हैं।

और पीछे एसी दिखाई दे रहा है।

पास ही हरे और पीले रंग की कुछ दीवाल भी दिख रही --

तस्वीर मे एक व्यक्ति स्कूटी पे जा रहा है। इसने ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना है और उसके सिर पर हेलमेट लगा है। वहीं एक व्यक्ति पैदल चल रहा है।